यह चित्र किसी गांव के मछुआरे की है।

सामने एक पंखा दिखाई दे रहा है।

लंबे लंबे दो तीन नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

अगल बगल मैदान दिखाई दे रहा है।

यह चित्र डेली मार्केट थाना रांची की है।

ऊपर सीलिंग का रंग सफेद एवं भूरे रंग के है दरवाजे भी काफी भूरे एवं सफेद रंग के है।

सामने सीढ़ियां बनी हुई है।

दुकान के सामने एक घर है जिसका गेट ब्राउन कलर का है उस पे वाइट कलर से एक डिजाइन बनाया हुआ है जो की लोहे की है।

सामने एक रेलिंग की थोड़ी सी पिक्चर दिखाई दे रही है।

दीवाल पर ए_सी लगी हुई है एवं कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं एवं कुर्सियां दिखाई दे रही है।

सामने एक खिड़की दिखाई दे रही है जिसके बाहर कुछ पेड़ है ।

यह एक लोहे की फैक्ट्री है जिसके किनारे वाले लोहों को रंग दिया गया है ऑरेंज एवं नीले रंग से।

खेत के आगे एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा--

पूरे बाजार में कहीं फल कहीं सब्जियां कहीं खाने पीने का सामान एवं कहीं कपड़े लगते जरूर दिख रहे हैं।

सामने एक रेलिंग दिखाई दे रही है एवं झरने से पानी भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है।

अगल बगल कुछ सफेद रंग की भी कुर्सियां दिखाई दे रही है।

इसमें अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है।

इस चित्र में एक व्यक्ति नीले रंग की टीशर्ट पहनकर कुछ काम करते हुए दिख रहा है।

इस चित्र में हमें कुल छह लड़कियां दिखाई दे रही है जिनमें से तीन बड़ी एवं तीन छोटी है।

अगल-बगल पेड़ एवं सामने एक सूखी हुई कटी पेड़ दिखाई दे रही है।

यह दृश्य एक दुकान का है।